यहां मुझे बहुत बड़ा एक बाथरूम दिखाई दे रहा है जिसमें एक वाश बेसन भी लगा है।

वो तीन चार आगे खड़े हैं और नीचे स्कूटी लगाया है नीचे ठेले लगे हैं।

यहां मुझे एक मिस्त्री दिख रही है जो अं--

यहां मुझे एक आदमी मास्क लगाए हुए नजर आ रहा है जिसके पीछे तीन चार सिलेंडर रखे हुए हैं।

यह एक रूम है जिसमें गेट है गेट बंद हुई है साइड में एक टेबल भी है जहां कुर्सी लगी है।